शायद घर बन रहा है मजदूर लोग काम कर रहे है पीछे पेड़ है हरियाली हैं।

दरवाजा है दो खिड़की है बड़े बड़े।

मंदिर दिख रहा है एक छोटा सा बीच में एक छोटा सा नदी या तालाब जैसा दिख रहा है।

ऑफिस में एक आदमी बैठा हुआ है।

टाइल्स नहीं टाइल्स नहीं लगा है।

बिरयानी रखा हुआ है एक प्लेट में।

और दो बर्तन में और रायता रखा हुआ है।

यह कोई पुराना किला दिख रहा है।

टूटा फूटा सा कोई खंडहर सी जगह है यह

अ जो दीवार है ना वो पिंक कलर की है।

हरियाली वाली जगह हैं गुलाबी गुलाबी फूल दिख रहें हैं पीछे पीले पीले फूल दिख रहें हैं।

और एक आदमी नीचे जमीन पर बैठा हुआ।

एक घर है घर के अंदर ये सब रखा हुआ है।

एक अंकल मास्क लगाके खड़ी है।

ई_ओ_आर_ए ये यह लिखा हुआ है ऊपर।

एक नदी है अ हरियाली है थोड़ी बहोत--

डॉक्टर साजन अग्रवाल डॉक्टर अजय अग्रवाल डॉक्टर ए_पी आदित्य डॉक्टर सिद्धार्थ अग्रवाल--